मौसमी खाने से शरीर में तंदूरस्ती आती है। खून की कमी पूरी होती है।

अलग-अलग प्रकार के बसें मिलती है जो बस हमें यहाँ ले जाती है। वहाँ जाने के लिए बस का उपयोग करना पड़ता है।

रेस्टोरेंट एक ऐसी चीज होती है जहां से हमें खाने-पीने के सारे साधन सभी आसानी से मिल जाते हैं।

तथा बहोत स्वादिष्ट खाना बहोत कम देखने को रास्ते में जाते वक़्त कोई खा सकते हैं।

जिससे हमारी भूख मिट जाती है। रेस्टोरेंट बहोत अच्छी व्यवस्था होती है।

हमें बस लेने के लिए जाना पड़ता है अगर हमें ब कहीं पर जाना है अपने शहर से दूसरे शहर जाना है तो हमें --

चेयर बिना हमें आराम करना बहोत मुश्किल हो जाता है इसलिए हमें चेयर होत आवश्यक होती है बहोत अच्छी होती है।

और पेड़-पौधे भी होते हैं जहाँ से हमें फायदेमंद ताज़ हवा मिलती है।

भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल्याणकारी समिति --

तथा भीमराव अम्बेडकर जैसे अ समाजवादी --

मरीजो के लिए बोहोत सारी व्यवस्थायें होती हैं। बोहोत सारी सुविधाएं होती हैं। बीमार व्यक्ति तथा एक्सीडेंट वाला व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया चोट लग गई हो --

समाज को सुधारने के लिए उनके अच्छे रास्ते पर लाने के लिए उनके समझाते हैं तथा उनको अच्छी सीख देते हैं।

अगर हमें अपने शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो जिसकी दूरी थोड़ी कम हो वहाँ पर जाने के लिए टेंपू तथा रिक्सा ऑटो रिक्सा का उपयोग करते हैं।

इन पटाखों से प्रदूषण भी फैलता है लेकिन खुशी के मौके पर फिर भी इनको जलाते हैं।

कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स मजफ्फरनगर का ऐसा कॉलेज है जो बहोत ही प्रतिष्ठित बहोत ही --

जिम में जाकर के हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा शरीर --

और स टफ बनाने के लिए और अपने आपका को शरीर को अच्छा बनाने के लिए जिम करते हैं।

हरी सब्जियाँ बहोत पौष्टिक होती हैं जिनके हमारे शरीर को बहोत ताकत मिलती है। हरी सब्जियाँ खाने से शरीर में --

उनको बेचते हैं तथा पकाकर खाते हैं इसलिए वहां वहाँ पर मछली बाजार भी होते हैं जिनमे मछली ही बिकती है तथा मछली ही खरीदी जाती है।

सजावट हम अनेक त्योहारों पर तथा अनेक फंक्शन में करते है सजावट करने के लिए हम --

ये एक ऐसा टनल होता है जिसमें हमें खड़े होने पर ऊपर से हमारे चारों तरफ पानी पड़ता है जिससे की गर्मी में भी ठंडी का एहसास होता है।

इसलिए डॉक्टर बहोत उपयोगी होते हैं डॉक्टर होने चाहिए के समाज के अंदर जीवित रहने के लिए।

इन सड़कों को हम राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से भी जानते हैं इन सड़कों पर हम पैदल तथा किसी वाहन के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं।